तस्वीर में एक होटल दिखाई दे रहा है।

वे कुछ परस रहे हैं और दो टिफिन दिखाई दे रहा है।

सफेद कलर का बल्ब जला हुआ है।

एक नीम का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लालपीला हरा बल्ब बल रहे हैं।

छोटे छोटे फूल के पौधे हैं।

इस तस्वीर में दो कार दिखाई दे रहे--

हरा हरा कलर का बहुत सारे पेड़ हैं।

तस्वीर में एक क्वालिटी रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

एक बांस दिखाई दे रहा हैं।

एक डॉक्टर साहब भी साइड में बैठे हुए हैं कु--

सैमसंग भी लिखा हुआ है।

और मंदिर में एक लाल कलर का धागा निकला हुआ है।

कुछ लोग सोए हुए हैं और कुछ लोग खड़े हैं।

कुछ लोग इधर उधर देख भी रहे हैं।

ऊपर का कलर सफेद है।

एक नाव में एक नौकायान नाव को चलाते हुए नजर आ रहे हैं और सफेद कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

हरा कलर का वह गमछा पहना हुआ है और एक आदमी का हल्का पेट दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर मोबाइल का कवर दिखाई दे रहा है।

मंदिर में बहुत तरह के लाइट लगाया गया है।

बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

तुभ लाभ लिखा हुआ है।

लाइट जल रहे हैं तीन तीन दिखाई दे रहा है।

एक लड़का अपना पैर उठाया हुआ है और दूसरे का पैर पकड़ रहा है।

घर का कलर एक सफेद है और एक घर का कलर पीला है।